इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे भारतीय राष्ट बैंक है और बहोत सारे गाड़ी है बहोत सारे साइकल है और कुछ तो लोग कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे गाड़ी पे रख के और कुछ है वहाँ पे जो बंद हुआ है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहाँ पे एस_बी_आई बैंक है और विवो फ़ोन का दुकान भी है जो पूरा बंद है और उधर पे एक नारंगी कलर का बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वहां पे पीछे में बोहोत अच्छा सा सजाया हुआ है लाइटिंग हुआ एक चर्च है और अगल-बगल में पेड़ को पूरे सजाया हुआ है बोहोत सारे लोग बाहर हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बोहोत सारा पानी है और पानी के बीचे बीच में रास्ता बना हुआ है और आसमान का रंग भी बोहोत अच्छा है। उधर तरफ हरा रंग के पेड़ भी है।

इस चित्र मे हम देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक है जो दो लोग बाहर बैठे हैं और गाड़ी है।